हैं यहाँ की जमींन पीली और काली है और बोहोत ही अच्छा है।

यहाँ एक बुक की दुकान है और बोहोत सारी बुक और कॉपियां भी है।

ये एक बहोत बड़ी पहाड़ी है। पहाड़ी में बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर --

ये एक बहोत बड़ा घर है। उसके आगे-पीछे को हरे भरे घास उगे हुए हैं और बहोत सारे पेड़ --

और उसके बगल में बहोत सारे पेड़ हरे भरे हैं और एक पेड़ भी है।

यहाँ सड़क पे बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ साइकिल भी खड़ी है।

ए दो आदमी बैठे हुए हैं। दो खड़े --

टाँगे हुए हैं और हाथ में बुक लिए है और एक आदमी अपनी दुकान पर खड़ा है।